यह एक स्विमिंग पूल है जहां पे बहुत सारे त बहुत सारे लोग जाते होंगे बच्चे बच्चियां महिला पुरुष अपना आनंद उठाने के लिए और यहां से स्विमिंग पूल मे स्विमिंग करते होंगे ।

यह गाड़ी भारती सरकार द्वारा दी जाती हे|

यह यह भी एक दुकान है जो काफी--

यह आदमी का पैर बहज गया होगा या फिर टूट गया होगा जो ये वो जो एक लड़का अच्छा कर रहा है।